और घर के बगल मे बड़े बड़े खजूर के पेड़ दिखाई दे --

और कुछ बड़े बड़े पौधे से दिखाई दे रहे है और पहाड़ के उपर जाने के लिए एक छोटीसी सड़क दिख रही है।

उपर जानेका एक रास्ता दिखाई दे रहा है एक पतलिसी सड़क दिखाई दे रही और पहाडो की ओर भी पीछे और भी पहाड़ बड़ी बड़ी पहाड़े दिखाई दे रही।

बड़ी पहाड़े दिखाई दे रही है तीन बड़ी बड़ी पहाड़े ऊंची ऊंची दिखाई दे रही है पहाडों पर भी हरे भरे पेड़ पौधे लगे है।

सड़क जाती हुई दिखाई दे रही हैसड़क के आएट साइट बड़े - बड़े पौधे बने हुए है।

किल्ले के बिचो बीच हरी भरी घास लगी ही हुई है और किले के आएट साइड बड़े-बड़े उचे-उचे हे हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे है।

और वहा पहाड़ो के पर नज़ारे उठा रहे है और वहा पे एक व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा है।

आहे तालाब के आइट साइड बोहोत से पेड़-पौधे लगे हुए है और पेड़-पौधो से दूर बड़या सा एक पहाड़ दिखाई दे--

अ एक लंबासा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल मे थोड़ी थोड़ी दुर पर सफ़ेद सफ़ेद कलर के पर्दे दिखाई दे रहे है और हॉल मे बहुत सारी--

और एक लेडीज खुर्सी पे बैठी हुई है और बहुत सी पब्लिक दिख रही है।

एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क अ के साइट में एक कार का शोरूमसा है जहा पे एक कार को उचाई --

रखी हुई है और उन बसो के आइट साइड बहूत सारी पब्लिक दिखाई दे रही ही है और--

यहाँ एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के बगल में कुछ कार जाती हुई दिखाई दे रही है और एक स्कूटी भी दिखाई--